ये डैम हमारे सरकार द्वारा बनाया जाता है और ये बहुत लाभदायक --

अच्छी शोरूम टाइप बनाई हुई है। आपकी जरूरत का हर एक कपड़ा यहाँ मिलेगा। अच्छी डिजाइनिंग है मुझे तो बहुत पसंद आइ है। आप लोग भी टॉय करें।

किप इट अप गो ग्रीन ब्रो ।

अगर आप कोई एच.डी. वो न्यू कनेक्शन जो डबल साइलेंसर एग्जॉस्ट बाइक आई है अगर आप लोग लेना चाहते हैं बाइक तो परफॉरमेंस वाइज । अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जा के ले सकते हैं।